एक बिज़ बोट भी दिखाई दे रहा है।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

बहुत सारे इंसान भी दिखाई दे रहा है।

जिसका कलर येलो में है।

तार सब भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में गोल्डन कलर का घर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे गाछ भी दिखाई दे रहा है।

वो सब भी दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर में है।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

एक व्हाइट कलर का सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर का कुर्सी सब दिखाई दे रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

सब्जी भी दिखाई दे रहा है।

गोलगप्पे भी दिखाई दे रहा है।

येलो कलर का फूल भी दिखाई दे रहा है।

कांच भी दिखाई दे रहा है।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

जंगल भी दिखाई दे रहा है।

इंसान भी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

गांछ भी दिखाई दे रहा है।

दो कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे इंसान भी दिखाई दे रहा है।

इंसाने भी दिखाई दे रहा हैं।

ऊपर में कपड़ा भी दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन पिंक ब्लू वाइट कलर में है।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

ऊपर में बहोत सारे छतरी दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का सिंटेक्स भी दिखाई दे रहा है।